इस चित्र मे भी दो दुकान हैं एक गाड़ी सुधारने की नजर आ रही हैं सामने की तरफ बहुत सारे नोट रखे हुए पीछे कुछ चीजे टंगी हुई आसपास मे बहुत सारे टायर रखे नजर आ रहे हैं।